और मुझे यहाँ पर एक बहोत बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके सामने लिखा हुआ है हिन्दी में सुभाष बजाज।

कमरे अ घर बना हुआ है। घर के सामने आने जाने का रास्ता बना हुआ दिखाई दे रहा है पिछे की तरफ।

सामने की तरफ एक स्कूल दिखाई दे रहा है जिसके सामने लिखा हुआ है गोरखपुर पब्लिक --

मुझे यहाँ पर दुकाने दिखाई दे रही है जो की एक दुकान खुली हुई है। जिसका शटर उठा हुआ --

और जिसको कपड़े पहनाये गए है सामने की तरफ भी कुछ लगे हुए है।

यहाँ पर जो रास्ता सा लगा है। यहाँ पर भी कुछ लाइटे दिखाई दे रही हैं। थोड़ी दूर में अँधेरा सा दिखाई दे रहा है और सामने की तरफ आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ पर।

कुछ लोग आते जाते हुए यहाँ दिखाई दे रहे है। बिजली का तार गया है जो कि ऊपर से दिखाई दे रहा है।

एक बाँस की बल्ली दिखाई दे रही है। सामने एक बोहोत छोटा सा पत्थर दिखा --

मुझे यहाँ सामने की तरफ एक ब बड़ी सी दुकान दिखाई रहे दे रहा है जिसपे लिखा है यू_पी बोर्ड एशिया पुस्तक केंद्र।

मुझे यहाँ पर एक वर्क शॉप दिखाई दे रहा है जो ऊपर ऊपर एक खंभे पे रखा गया है और एक लड़का उस कार की धुलाई कर रहा है।

और उस साइड में भी कुछ ड्राम बाल्टी उस टाइप के कुछ गत्ते वाले --

और एक बाइक सामने की तरफ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। दीवार दिखाई दे रहा है जोकि सीमेंटेड है। खंभा दिखाई दे रहा है जोकि कत्थे कलर में पेंट है। सामने की तरफ एक टावर दिखाई दे रहा है। आसमान दिखाई --